पब्लिक आती हैं। वह अपने अनुसार जहां जाना रहता है। उसे स्थान की बस को पकड़ कर बैठ कर चली जा --

उस फिटनेस क्लास में बहोत सारी मशीनें होती हैं और जो आपको यहाँ पे बॉडी बिल्डर बनाकर अपनी सेल्फी खींच रहा है।

जिसके चारों उम एक तरफ नाव खड़ी हुई है।

पक्की बनी हुई हैं। उसके बीच में एक स्विमिंग पूल दिख रहा है।

यह एक फोटो जो आपको दिखाई दे रहा है वह वाटर फाउंटेन का फोटो है। जिसमें बोहोत सारे लोग यहां पर आकर --

मेंबरशिप लेकर इसमें बहुत ही एंजॉय करते हैं वाटर पार्क है जिसमें बीच में बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

एक राउन्ड के पीछे बहुत ही ऊंचा पेड़ लगे हैं।

नदी का है। जिस नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है और नदी के उसपार बिल्डिंग बनी हुई है।

यह किसी रेस्टोरेंट का फोटो है जिसमें --

जिसमें जेंट्स लोग अपने हेयर कट करवा लेते हैं। उम्म सेविंग बना लेते हैं।

बोहोत सारे आइटम्स रखे हुए हैं जो कि पूरे आइटम्स किचन से रिलेटेड रखा हुआ है। क्रोकरी का सामान भी रखा हुआ है।

कुकर भी रखा हुआ है कढ़ाई भी रखी हुई है पैन भी रखा हुआ है। अच्छा समान है।

यह एक बैंक ऑफ़ बड़ोदा के अंदर का सीन दिख रहा है जिसमें बैंक ऑफ़ बड़ोदा --

यह एक फोटो आपको जो नज़र आ रहा है वह फोटो में जे सी बी मशीन का फोटो है।

खदान में से कोयले को निकाला जा रहा है।

यह एक बहोत ही पवित्र नदी का फोटो है। उस मु नद्रि नदी के एक साइड --

इस हाईवे से बड़ी-बड़ी गाड़ियां निकलती है। जैसे कोई ल ट्रक लोडेड होके निकलते हैं।

जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यह किस स्टेट का फोटो है। इस स्टेट का बड़े ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है।

और मोर का फोटो भी बना हुआ है। स्टेज के दोनों तरफ मोर भी बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर दिख रहा है।

लकड़ियाँ लगी हुई हैं और अभी बन रहा है। उसके बाजू से एक खाली प्लॉट नजर आ रहा है जोकि जिसमें घाँस उगी हुई है| बहोत ही --

यह फोटो जो आपको नजर आ रहा है वो किसी घर का फोटो है जिसमें बोहोत सारे नारियल के ऊंचे-ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं।

रोड का फोटो है जिस रोड में आदि तरफ --